एक बिल्डिंग है जो की हॉस्पिटल है जिसपे दी वरदान फॅमिली अस्पताल --

इस टेबल में काफी उम्म बैलून दिख रहे है इस रूम में बहुत अच्छी सजावट है।

काफी अच्छी है हैंडसम लग रहा है हाउस की तरह दिख रहा है।

बहोत अच्छे से इसे देख रही है रोड देख रही पर रोड के किनारे थोड़ा पानी दिख रहा जो--

और लाइटिंग है मैट है ढेर सारे लाइटिंग की गई है।

इधर लाइट हैं लाइट हैं।

पत्थरो पेस ऊपर से पानी आ रहा हैं इसमें--